इसमें से चार पांच डॉक्टर बैठे हुए हैं और तस्वीर ले रहे हैं।

यह तस्वीर एक चिड़ियाघर का दिखाई दे रहा है।

वह बहुत मोटे मोटे छड़ से इस छत की ढलाई हो रही है।

इस चित्र में हम ये देख पा रहे हैं कि यह चित्र एक गार्डन का चित्र है।

से यह प्रगति होंडा की दुकान का उद्घाटन हुआ हो।

अभी बाइक जो है वह कारपेट के ऊपर रखे हुए हैं यह होंडा के बाइक हैं।

हां बाहर में बहुत सारे आदमी भी बाईकों को देख रहे हैं।

इस चित्र में हम यह देख पा रहे हैं कि टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं।

जोकि पिकअप वैन की कलर ब्लू कलर की हो ।